जो ये ऑफिस ही गवर्नमेंट वाला ऑफिस होगा।

ये बाटा का शोरूम है।

बस की हालत ठीक नहीं लग रहा मुझे।

डम्बेल भी काफी सारे हैं।

लाल कलर की रीबन लगा रखी है।

यह कोई बर्थडे पार्टी होगा ये --

शादी त अब ख़तम हो गई हो --